कान्हा माधवन एंड कंप्यूटर है जहां सेल्स एंड सर्विसेस का काम देखा जाता है।

जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस पिक्चर में हमें बहोत सी चीजे दिखाई दे रही है इस पिक्चर में लोग एक फेस्टिवल मना रहे हैं जिसका नाम है दीपावली जोकि --

जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं यह एक बहोत ही बड़ा रूम है जहां पर की काफी सारी कुर्सियों को बहोत ही सुंदर रूप से सजाकर रखा गया --

जैसा कि हम देख सकते हैं इस रूम में एक खिड़की है यहां पर काफी सारे और भी समान है यह एक साइंस लैब की तरह डेकोरेट किया गया जहां पर एक स्केलेटन सोया है।